बोहत ही सुन्दर तरीके से --

बहुत ही ट्रिपल मंजिल है और बालकनी भी और बहुत ही ब्लू कलर का आसमान अच्छा दिखाई दे रहा है पेड़ भी लगे हुए हैं हरे कलर के हरे-भरे --